जो की सभी बच्चे अपना-अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा-बड़ा पेपर में कुछ कार्य कर रहे हैं यहाँ पर एक ग्रिल भी दिखाई गया है यहाँ पर एक भी टीचर सम्मिलित नहीं है यहाँ पर चारों पांच बच्चे कुछ कर --

यहाँ पर एक भंडारा चल रहा है जिसमें बहोत सारी औरत मर्द भंडारा में बैठी हुई है|यहाँ पर भंडारा के आगे एक मूर्ति लगा हुआ है और सब खाना खा रहे हैं| यहाँ पर एक व्रत रखी हुई महिला भी नजर आ रही --

पर एक व्यक्ति जो की एक सीटी रिक्शा को पकड़े हुए नजर आ रहा है यहाँ पर एक साइकिल मार्ट लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ है यह व्यक्ति जो कि एक हाफ पैंट पेहेने हुआ है और टी-शर्ट पेहेने हुआ है टी-शर्ट और हाफ पैंट वाइट कलर का है।

यहां पर एक व्यक्ति जो कि सेल्फ़ी ले रहा है और ब्लू टोपी और रेड कलर का टी-शर्ट पहने हुआ है इसमे व-व्हाइट कलर का धारी बना हुआ है।

इसका हीरो बाइक है और एक औरत जो एस.बी.आई. में आई हुई है नजर आ रही है यहाँ पर एस.बी.आई. का एक ए.टी.एम. एक भी लगाया गया है जो की --